इसमें मुझे बिल्डिंग के पीछे गंदगी दिख रही है।

जिस पर पसू चिकित्सा परिसर का बोर्ड लगा हुआ है।

में से एक औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई है और बाकी ने ऑरेंज --

एक मूर्ति बनी हुई है जिस पर एक बच्चा बैठा हुआ दिख रहा है।

स्कूल के सामने गार्डिंग एरिया बहोत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।